इस फोटो में मुझे क्रेन का रंग येलो दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक व्हाइट कलर का मकान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे सामने बहुत बड़ा मकान दिखाई दे रहा है इस फोटो में मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।